और वहाँ पर दो बाइक खड़ी हुई है।

और सामने खंभे खड़े हुए है।

सामने एक चित्र दर्शाया गया है और चित्र मे--

सामने एक चित्र दर्शाया गया है और चित्र के अंदर एक होंडा कंपनी --

ओ एसबीआई एटीएम की दुकान है।

और दुकान के ऊपर वी केयर लैब लिखा हुआ है।

और चित्र मे एक शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग सफेद और काले रंग का है।

सामने एक चित्र दर्शाया गया है और चित्र के अंदर एक क्लाउड नाइन बार है।

सामने एक चित्र दर्शाया गया है और चित्र मे एक कपड़े की दुकान दिखाई गई है।

सामने एक चित्र दर्शाया गया है और चित्र मे एक मंदिर दिखाई-